बिल्कुल जरा-जरा सी मछली रखें हुए हैं।

वो छठी माता का अर्घ देने के लिए बैठी हुई है एक लेडिस सिर पर झउवा रखी है उ झउवा मे अगरबत्ती जलती हुई दिखाई दे --